ये एक फैक्ट्री है ये बिस्किट फैक्ट्री है।

और मूवी वगैरह दिखाई जाती हैं हमें इस पर्दे --

पर हम मूवी वगैरह देखते हैं।

तरह की नई और हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज हमें दिखाई जाती है।

तालाब कितना अच्छा लग रहा है और यहां पर --

मछली लेने चलते हैं यार बाजार से आज मछली खाएंगे।

एक खेत है और ये खेत जुता पड़ा है और इस --

खेत में हम अनाज गन्ने गेहूं --

इन्वेस्ट कर सकते हैं ये हमें अच्छी सर्विस देती है।

होएगी इस खेत में भी गन्नो की --

कितना लंबा और कितना बड़ा बुल है।

नदी है ये कितनी बढ़िया लग रही है।

इस फैक्ट्री में काफी तरह-तरह की चीजें बनाई जाती है।

भाई कितनी अच्छी तरीके से बनाई गई है मस्जिद --

ये दिये हैं और इन दियों में हमने --

और इस पुल के नीचे एक झील है और --

जिम हमारी हेल्थ के लिए हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है।

झूले वगैरह मिलते हैं और ये एक स्विमिंग --

ये एक सैलून है और ये लड़का एक सैलून में बैठा है।

लड़के की शर्ट वगैरह ऑफिस में है लड़का --